हर व्यक्ति के पास एक-एक बैग है।

इस बस में कई सारी सीटें हैं।

इस चित्र में मुझे एक मॉल नजर आ रहा है।

बहुत सारी मरी हुई मछलियां पड़ी हुई हैं।

एक व्यक्ति है जो यहां पर मछली को बेच रहा है।

मे बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

सामने वाइट शर्ट पहने खड़े हुए हैं और उनके पीछे एक और खड़े हुए हैं।

पीली कलर की साड़ी पहने खड़ी हुई हैं उनके हाथ में--

यहां कई तरह के बुके बने रखे हुए हैं।